और आस पास में बहोत सारे पेड़ भी है आदमी सब भी है बस स्टैंड के आगे में--

पूरा पर्दा भी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में यह दिख देख रहे है एक घड़ी का दुकान है उसमें बहोत सारे घड़ी भी रक्खा हुआ है काउंटर भी बना हुआ है सीसा का गेट भी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में यह दिख रहा है कि एक रूम है रूम में दो लड़का है वो बेड सरिया रहे और बोल्ब भी लगा हुआ है।

और उसमें पेर सब बहोत सारे जलमा हुआ है और तक्था सब भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में यह दिख रहा कि यहां पे शादी का डेकोरेशन हुआ हैं।

व्हाइट कलर का ड्रेस और ब्लैक कलर का ड्रेस पहने बहुत बड़ा फील्ड भी--

इस पिक्चर में यह दिख रहा है कि यहां पे एक दुकान है दुकान में बहुत सारे सामान हैं

फील्ड है। उसमे सभी बच्चे लोग अपना कबड्डी खेल रहे हैं।

खड़े हैं और वो गमछा पहने हुए हैं गंजी पहने हुए--

इस पिक्चर में देख रहे है एक सोना का दुकान है उसमें बहोत सारे सोना रखा हुआ है।

उसके ऊपर फूल से पूरा अच्छे से सजाया हुआ है।